यहां एक बहोत बड़ा।

पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे लगे हुए भी पत्ते हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ यहाँ एक भी पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहा है।

मिठाई है जैसे रसगुल्ला हो गया गुलाब जामुन मिलते हैं केक वगैरा यहां पर एक डस्टबिन कचरा वाले यहां पे एक --

अंडे मिलते हैं खाने के लिए यहां पर एक काटा है यहां पे कोलड्रिंक है यहां प बहोत सारे चिप्स वगैरे हैं बहोत दुकान लगे हुए हैं।

यहां बहोत बड़ा समुंदर बहोत लोग व्यक्ति --

यहां पर चॉकलेट वगैरह मिलता हुआ--

यहां पर एक बहोत बड़ा पारक बना हुआ नजर दिखाई दे रहा तीन व्यक्ति खड़े--

यहां पर दो तीन व्यक्ति खड़े भी दिखाई दे रहे हैं।